इसको बढ़ाने का काम किया जाता है सात आठ बल्ब दिख रहे है जो सुन्दरता ला रहे है।

और जो एंट्रेंस जो गेट है ये काफी बड़ा है और एंट्रेंस जो गेट है उसमे एंटर करने के बाद जो आपको मिलेगा वो --

यह एक एन.जी.ओ. के माध्यम से कुछ वितरण करने के लिए बांटने के लिए एकत्र किया गया है जमा किया गया है।

बड़े जो झुर से थोड़े बड़े होते है वो दिख रहे है ब्लू रंग का आसमान दिख रहा है काफी सुंदर फोटो है।

ये होटल आकाश है और संभवतः ये लाइट का स लाइट है जो अंदर में जल रही है उससे ये होटल आकाश को पढ़ा जा सकता है अन्यथा --

ये एक होटल है और काफी अच्छा साज-सज्जा के साथ यहां पे बहुत अच्छा ला लजीज भोजन बनाया गया है।